यह हमें एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही है।

और बैठने के लिए तीन कुर्सियां भी दिख रही है।

यहां पर काफी रंग बिरंगी दवाइयां--

यह हमें एक ऑफिस नजर आ रहा है।

और सामने मेज पर एक तौलिया वे दीवारों पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है।

और लोग रंग बिरंगे कपड़े पहेन कर इन कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इसके सामने तीन व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दे रहे है और साथ में पार्किंग भी है।

जिसके ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है।

पारक के अंदर अन्य रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं।

और हरियाली भी दिखाई दे रही है।

और किले का रंग लाल और--

जिसके अंदर पानी का रंग नीला दिखाई दे रहा हैं।

जिसमें औरतें आदमी बैठे हुए दिख रहे हैं।

जिस पर विशाल ज्वेलर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जिसके अंदर द वीसा मास्टर लिखा हुआ है जो कि कपूरथला में है।

यहां हमें एक इमारत नजर आ रही है।